इसमें मुझे शादी का डेकोरेशन दिख रहा है।

डेकोरेशन में मुझे फ्लावर्स डेकोरेशन दिख रहा है।

इसमें मुझे बहोत सारे लोग चेयर में बैठे दिख रहे हैं।

डेकोरेशन के बाहर दो लोग बैठे दिख रहे हैं।

इसमें मुझे एक गोडाउन दिख रहा है।

इसमें मुझे किचेन का प्लेटफॉर्म बनता हुआ दिख रहा है।

इसमें मुझे दो विंडो दिख रही है।

इसमें मुझे एक ब्रिज दिख रहा हैं।

इसमें मुझे एम_आई का एक ऑफिस दिख रहा है।

इसमें मुझे बहोत सारी पत्तियां दिख रही हैं।

इसमें मुझे पत्तियों में लाइनिंग बनी दिख रही है।

इसमें मुझे ऑनलाइन पोर्टल की शॉप दिख रही है।

इसमें मुझे सलाद सजा हुआ दिख रहा है।

इसमें मुझे बाहर रेस्ट करने के लिए कुर्सी दिख रही है।

इसमें मुझे मैकेनिक्स मशीनें दिख रही हैं।

इसमें मुझे दो व्यक्ति दिख रहे हैं।